यहाँ पे आपको हर तरह की मशीने दिखाई देंगी। डंबल वगैरह और ये ट्रेड मील है। वो सामने की तरफ बॉल दिखाई दे रहा है।

और लम्बी नदी लम्बी नदी के ऊपर बना ब्रिज है ये बहोत बड़ी नदी है लम्बी नदी है।

बाहर तरफ देखेंगे के तो एक झंडा अपने देश का झंडा जो है ऊपर हवा में ध्वज --

इस तस्वीर को देखिये ये तस्वीर है गोर --

जी किसी रेस्टो क्या नाम है किसी मेरा थल का फोटो है यहाँ पे बहुत सारी औरते जो है किचन में खाना बना रही है।

विशाखा नाम से विशाखा डेयरी पार्लर यहाँ पे हर तरह की दूध से बनी चीजें यहाँ पे मिलती हैं।

यहाँ पे ऑटो ऑटो मिल जाएँगी सामने की तरफ देखो डिज़ार खड़ी है टवेरा खड़ी है मैजिक खड़ी है यहाँ पे लोग सब आते हैं जो रेलवे स्टेशन बाहर आते हैं।

मगना मॉल गोरखपुर में स्थित है।

क्योंकि इस विद्या इस कॉलेज का नाम ही है।

नहीं गोरखपुर का नहीं बगल में मार्ट है जो गोरखपुर मे नहीं स्थित है। यहाँ पे आपको हर तरह के शैम्पू क्रीम कंडीशनर लोशन चायपत्ती सब कुछ मिलता है यहाँ पे।

और आप देख पा रहे कि एक टी.वी. रखा गया है और रेस्त्रा में अभी कोई भी ग्राहक बैठा नहीं है।

तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ये कोई बहुत बड़ी नदी मुझे जहा तक आभास हो रहा है। गंगा न जी के ऊपर बना हुआ ब्रिज है।